बड़े बड़े आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

गंदे पानी का तालाब दिखाई दे रहा है।

एक बेड दिखाई दे रहा है।

काफी सारे चेयर रखे हुई है।

टेबल रखी हुई है पीछे कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

एक सामने सोफा दिखाई दे रहा है।

उसके हाथ में एक काँची है।

मुझे यह एक शहर दिखाई दे रहा है जि--

लोहे के फ्रेम दिख रहे हैं।

और खीरे दिखाई दे रहे हैं।

एक गट्टा दिखाई दे रहा है।

और काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा--

दुकान में मुझे बहुत सारे--

चेयर दिखाई दे रही है।

इस दुकान में मुझे दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

भगवान की कुछ तस्वीर छपी हुई हैं।

काफी सारी बेंचे दिखाई दे रही हैं।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है बलब दिखाई दे रहा हैं।

कुछ बड़े बड़े इंजन खुले हुए दिखाई दे रहे हैं।

बड़ा सुंदर होटल दिखाई दे रहा है।